यह एक फल की दुकान है जहाँ पे बहुत सारे फल रखे हैं। जिसमें काला अंगूर हरा अंगूर संतरा अनार आदि हैं।